स्कूटी रखी हुई हैं। कुछ लड़के घूम रहे हैं लड़कियां भी घूम --

और यहाँ पे ना ग्राउंड में नीचे ग्रीन घांस लगी हुई है।

और सफ़ेद कलर के लाइट्स लगे हुए हैं। नीचे टाइल्स लगे --

और यहाँ पे एक अ- चट्टान टाइप की बनी हुई है पत्थड़ ही पत्थड़ो की।

यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ। उसमे लिखा है बनारस फूल भंडार।